एक सड़क है इस सड़क के किनारे एक बस खड़ी है और ये सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है यहाँ कुछ लोग है जो इस सड़क पर पैदल जा रहे हैं इस सड़क के बगल में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारी बसे खड़ी हैं।

यह एक होटल है इस होटल में बहुत सारे कमरे बने हुए है यहाँ एक टेबल है और यहाँ ढेर सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं इस कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ कुछ लिख रहा है इस होटल में बहुत सारे पंखे और लाइटे लगी हुए हैं ।